हरे-भरे काफी सारे पेड़ दिख रहे है कुछ लोग आते-जाते दिख रहे इधर-उधर रस्ते दिख रहे है इधर से उधर एंड कुछ दुकाने है।

बड़ा-सा प्लेग्राउन्ड दिख रहा है जिसमें बहोत सारी घास दिख रही है आजू-बाजू में बिल्डिंग्स दिख रही हैं पेड़ पौधे काफी ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

एंड लाइटिंग पोल दिख रहे हैं।

के गेट के पीछे बड़ा सा घर है जो कि ग्रीन कलर में है पीछे आसमान दिख रहा है एंड छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं सामने जमीन दिख रही है एंड अ बाउंड्री वॉल दिख रही है फेंसिंग दिख रही है।

और ये डिफरेंट टाइप के है एक बाग टाइप का दिख रहा है जिसमे छोटी-छोटी इटे दिख रही आजु-बाजू।

सामने फैंसी दिख रहा है जिसमें लोहे कि फैंसी बनी हुई है एंड एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

वाइट कलर का एंड ब्लैंकेट रखा हुआ है तकिया रखा हुआ है स्विच बोर्ड दिख रहा है सप्लाई का एंड दो पिलो रखा हुआ है। जमीन दिख रही--

छत का है छत मे काफी सारी ट्यूबलाइट्स जलती हुई दिख रही है एंड अगल बगल अलमारी मे काफी सारे सामान रखे हुए है।

ये थाली है थाली में काफी सारी मछलियां हैं और ये मछलियां दूसरे प्रजाति की बनी हुई हैं।

नीचे जमीन दिख रही है जमीन में पैरों के निशान बने हुए हैं पीछे फाल दिख रही है दीवाल दिख रही है हिरन काफी इसे छांव दिख रहा --

बिल्डिंग पे काम चल रहा है जिसमे कांच लग रहा है आउटर साइड में पास में भी एक गाड़ी खड़ी हुई है इसपे हेलमेट रखा हुआ है।

फोटो में तीन लोग खड़े हुए हैं एक टेबल के थ्रू जिन्होंने डिफरेंट कलर की स्लिपर पहन के रखे हैं।

एक काली गाय बेड़ा में घास खा रही है।

पार्किंग एरियाज है पार्किंग एरियाज में काफी सारी फोर व्हीलरस गाड़िया खड़ी हुई है।

सामने इंडिया का फ्लैग दिख रहा है ऐसा पता चलता है कोई सा हवाई अड्डा है।